नमस्कार introduction to expeyes junior पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
हम निम्न भी सीखेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
andriod version 502
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको हाईस्कूल भौतिकी का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
सबसे पहले देखते हैं expeyes क्या है
expeyes junior यंत्र डिवाइस इस तरह दिखता है
यंत्र डिवाइस को usb port के द्वारा system से जोड़ा जा सकता है
यहाँ expeyes junior की कुछ मत्वपूर्ण विशेषताओं की सूची है
यह यंत्र voltages नाप सकता है plots और वेवफॉर्म्स बना सकता है
* यह 12 bit input/output analog रेज़ोल्यूशन रखता है
अब देखते हैं इस यंत्र को online कैसे खरीदते हैं
firefox web browser खोलें address bar में type करें
इस यंत्र को खरीदने के लिए सारे विवरण के साथ एक web पेज खुलता है
अब भिन्नभिन्न operating systems पर सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बारे में सीखते हैं
* expeyes junior का सॉफ्टवेयर python भाषा में coded किया गया है
सॉफ्टवेयर निम्न पर कार्य करता है
शुरुआत के लिए ubuntu लिनक्स os पर संस्थापित करते हैं
हम ubuntu software center से इस सॉफ्टवेयर को सीधे संस्थापित कर सकते हैं
वैकल्पिक रुप से firefox web browser खोलें address bar में type करें:
पेज पर software टैब पर click करें software installation पेज खुलता है
expeyes deb link पर click करें save file dialog box खुलता है save file चुनें और ok पर click करें
downloaded की हुई फ़ाइल पर click करें
फ़ाइल ubuntu software centre में खुलती है install button पर click करें
authenticate dialog box दिखता है system का password type करें और authenticate button पर click करें
संस्थापन कुछ समय ले सकता है
सॉफ्टवेयर interface खोलने के लिए dash home पर click करें search bar में type करें expeyes junior
expeyes junior icon दिखता है interface को खोलने के लिए इस पर click करें
अब netbook पर सॉफ्टवेयर संस्थापित करते हैं
netbook पर lubuntu software center उपयोग करके expeyes junior सॉफ्टवेयर संस्थापित किया जा सकता है
software center icon पर right click करें open चुनें lubuntu software center window खुलती है
search a package box में type करें: expeyes expeyes icon दिखता है icon चुनें
status bar पर add to the apps basket button पर click करें
menu bar पर apps basket button पर click करें apps basket window खुलती है
package सूची से expeyes चुनें install packages button पर click करें
authenticate dialog box दिखता है system का password type करें और authenticate button पर click करें
installing packages dialog box दिखता है संस्थापन कुछ समय लेता है
usb cable उपयोग करके यंत्र को netbook से जोडें
netbook में सॉफ्टवेयर interface खोलने के लिएstart button पर click करें>> education पर जाएँ>>
expeyes junior चुनें सॉफ्टवेयर interface खुलता है
अब android पर सॉफ्टवेयर संस्थापित करते हैं
निश्चित कर लें कि आपके android यंत्र पर wi fi या data pack उपलब्ध हो
expeyes junior यंत्र को आपके mobile से otg cable द्वारा जोड़ा जा सकता है
अपने mobile के home button पर click करें>> google play store पर जाएँ>>
apps पर click करें apps पेज खुलता है
ऊपरी दाएं कोने पर मॅग्निफाइंग glass पर click करें
type करें: expeyes expeyes पर click करें install पर click करें
license agreement स्वीकार करें downloading शुरू होती है
downloading के बाद open पर click करें
expeyes experiments dialog box खुलता है
use by default for this usb device check box पर click करें
ok पर click करें interface खुलता है
अब windows operating system पर सॉफ्टवेयर संस्थापित करते हैं
अपना default web browser खोलें address bar में url type करें expeyes in और enter दबाएँ
software टैब पर click करें ms windows तक नीचे जाएँ
windows संस्थापन के लिए हमें python interpreter और आवश्यक libraries संस्थापित करने की ज़रूरत है
निम्न drivers और files download और संस्थापित करें:
मैंने अपनी downloads library में सारी files पहले ही downloaded कर ली हैं
expeyes300 zip फ़ाइल पर right click करें और extract here विकल्प पर click करें फ़ाइल extract होती है
expeyes300 folder पर double click करें
eyesjunior folder पर double click करें files की सूची खुलती है
croplus फ़ाइल पर जाएँ right click करें और properties चुनें croplus properties window खुलती है
change button पर click करें python चुनें फिर ok पर click करें
properties window में ok पर click करें croplus फ़ाइल पर double click करें
आप देख सकते हैं कि python exe फ़ाइल रन हो रही है सॉफ्टवेयर interface खुलता है
कृपया ध्यान दें windows 8/81 पर सॉफ्टवेयर संस्थापित करते समय settings में unsigned driver installation को enable सक्षम करें
हम यंत्र को usb port के द्वारा system से जोड़ सकते हैं एक बार जब जुड़ जाता है तो सॉफ्टवेयर interface खुलता है
अब मैं यंत्र और interface उपयोग करके एक बुनियादी परीक्षण दिखाऊँगी
इस परीक्षण में हम आंतरिक और बाहरी स्रोत के voltages को मापेंगे और तुलना करेंगे
परीक्षण दिखाने के लिए हमें voltage के बाहरी स्रोत की तरह एक battery की ज़रूरत है battery की voltage 3v है
इस परीक्षण के लिए ground gnd terminal और a1 terminal battery से जुड़े हुए हैं
interface पर a1 terminal के बीच voltage दिखाने के लिए a1 पर click करें प्रदर्शित voltage + 315 v है
connection पलटने पर voltage 314v हो जाती है
battery की जगह हम voltage के आंतरिक स्रोत के रूप में pvs उपयोग कर सकते हैं इस परीक्षण के लिए a1 pvs से जुड़ा हुआ है
interface के दायीं तरफ set pvs value = 3v और enter दबाएँ pvs की प्रदर्शित voltage 3001v है
ऊपरी बाएं कोने पर a1 पर click करें a1 की प्रदर्शित voltage 3008v है
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा:
लिनक्स netbook android और windows पर सॉफ्टवेयर कैसे संस्थापित करते हैं यंत्र को सिस्टम से कैसे जोड़ते हैं और एक सरल परीक्षण दिखाना
एक नियत कार्य में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित सॉफ्टवेयर संस्थापित करें
expeyes junior new delhi के interuniversity accelerator centre के phoenix project द्वारा बनाया और विकसित किया गया है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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चालते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे सम्पर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है